और उसके बगल में एक घर है। घर कच्चा है।

आदमी सर के ऊपर टोकरी लिए हुए है। उसमें --

एक खंडर है। खंडर में दिवाले टूटी हुई है।

दो खिड़कियें लगे है रौशनदान हैं।

छत है छतों में लाइटे लगीं हुईं है।

एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री नीले कलर की है। टीन छत में टीन सेट पड़ा है और साबुन की फै --

और उसके सामने बाइकें खड़ी हुई है। उसमें कुछ आदमी जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। हरे पेड़ --

ये एक मकान है। मकान के सामने पार्क है। मकान व्हाइट कलर का है। उसके ऊपर बादल व्हाइट कलर का है।

यह एक हॉल है। हॉल में झूमर लगा हुआ है। झूमर में फूल लगे हुए हैं। फूल --

सामने एक गेट लगा हुआ है बड़ा-सा। उस पे एक बोर्ड लगा है। बोर्ड के बगल में पेड़ है।

ये एक बंग्ला है। बंग्ला व्हाइट कलर का है। ऊपर छत नी हरे कलर की है।

कुछ आदमी आ रहे हैं। एक औरत खड़ी हुई है। औरत ने लाल कलर का दुपट्टा ओढा हुआ है।